एक सीनरी नजर आता है सूरज डूब रहा है और बोहोत सारी मकाने भी है यहां पर काफी अच्छा नजारा दिख रहा है।

यह तस्वीर आईडिया के ऑफिस की है ओपनिंग पार्टी की है बहुत सारे बैलून लगे हुए हैं।

एक मालगाड़ी लग रही है और कुछ लोग वहां कोने में बैठकर ट्रेन का इंतजार करते हुए नज़र आ रहे हैं।

यहां एक क्लासरूम का नजारा नजर आता है|

यह सामने कई सारे लाइट और पेड़ लगे हुए है।

ये एक कंस्ट्रक्शन का काम नज़र आ रहा है जहा पर छत को बास-बल्लियों से बैलेंस किया गया है संतुलन बनाया गया है।

यह एक जिम की तस्वीर है जहा पर जिम में यूज करनेवाले कई सारे सामान है कुछ लोग जिम में खड़े भी है।

एक दुकान है जहा पर डेली यूज का सामान मिल रहा है।

यह एक नदी है शायद गंगा नदी जैसी नजर आ रही है इस तट पर पेड़ और मकान नजर आ रहे है।

एक बास्केट भी नजर आ रही है जिस पे सामान रख सकते है।